इसके अंदर बहुत अंधेरा है सामने में गेट में रेड कलर है दो साइड दो बच्चे खड़े हुए है बीच मे एक आदमी झुका हुआ है ऊपर की दुकाने सेटल डाउन है।

बोर्ड लगा हुआ है जो ब्लू कलर का है जिसमे लिखा व्हाइट कलर का है नीचे मे दो साइड दो दुकान है एक साइड व्हाइट दिख रहा है दूसरी साइड हल्का अंधेरा है एक लाइट जल रहा है।

इसका लगा हुआ बॉर्डर ब्लैक कलर का है इसमें पिंक व्हाइट एण्ड रेड कलर है हल्का सा तीन कलर का फूल दिख रहा है पिंक रेड ब्लू और ऊपर में बड़ा सा लाइट --

बड़ा-सा एरिया है जिसमें बहुत सारी मूर्तियां बन रहीं हैं जो आधे-अधूरे हैं| किसी के सर नहीं है किसी की हाथ नहीं है एक आदमी एक टेबल के ऊपर खड़ा हुआ है।

एक बहोत बड़ा सा गोल सा पक्के का पार्थिव सा बना हुआ है जिसके बीचों-बीच एक आदमी है जो कि काले रंग की सीढ़ी है।

एक लंबा सा रोड है जो वाइट कलर का दिख रहा है उसके दोनों साइड बिल्डिंग है जिन में कलर वाइट और रेड कलर है और उसका बीड ग्रीन कलर का है ऊपर आसमान दिख रहा है।